यहाँ एक पोल है जो बी.एड. उएड की तैयारी के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर बात किया जा रहा है दो तीन टोटो लगे हुए हैं साइकिल है रिक्सा है।

कहीं रखा हुआ है गिटार बजाना चाहिए सीखना चाहिए म्यूजिशियन बच्चे लोग सिखाते हैं इससे।

शायद पूजा करके हाथी को नहलाया जा रहा है हाथी को हनुमान जी भी है बजरंगबली।